इसमें पुजारी पूजा-पाठ करते हुए नज़र आ रहे है।

की एरिया के पास में मेला लगा हुआ है मेले में अगल-अगल तरह के झूले लगाए हुए है यहाँ पर एक--

टेबल लगा रखी है जो बहोत बड़ी है अम्म टेबल के पास में दो चेयर डाल रखी है।

यह एक इंडियन ऑइल का पेट्रोल पंप हैं।

यहां पर बहुत ही एक रोड जाता हुआ नजर आ रहा है।

नदी के उस पार जाना चाह रहा है। यहँ एक नाव वाला है जो नाव चलता है।

डीजे की धुन के ऊपर नाच रहे है यहाँ पर ऊपर--

यहाँ एक नाव है यह नाव पानी के अंदर खड़ी है इस नाव को एक--